पहाड दिख रहा है पहाड़ के किनारे किनारे आप देख सकते हो ऊपर कुछ और कुछ और इसमें आप देख सकते हो और उसमे काफी कुछ बना हुआ है नीचे आप देख सकते हो और उसमे काफियो बना हुआ है यहा आप देख सकते हो पति जमीं है।

इसमे आप एक जो है बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग बगल मे आपको जो है एक जो है आपको टावर दिख रहा है और टावर दिख रहा है तार भी लगे हुए है और इसमें जो है बिल्डिंग के सामने आपको--

इसमे एक बिल्डिग दिख रही है जोकि पीछे और सामने आपको कुछ पेड़ दिख रहे है पेड़ भी लगा हुआ है और ब जो आपको दिख रहा है की--